नीचे में बैठने का व्हाइट कलर का बना हुआ है राइट साइड में लोहा का है उसके ऊपर में भी कुछ गमले है।

उसके पीछे में एक औरत है जिसने ब्लू कलर का पहना हुआ है एक--

यहाँ पे दो खिड़किया है दो दरवाजे है ऊपर में जो है उसका कलर ब्लैक है।

यहाँ पे दो खिड़कियां है दो दरवाजे है ऊपर में जो है उसका कलर ब्लैक है।

ऑरेंज कलर है उसके बगल में ग्रीन कलर के छोटे से उसके पास में बैलून रखा हुआ है व्हाइट कलर का है उसके बगल में तीन बांस है जो एक साथ में खड़े है।

फोटो में बीच में कच्चा रास्ता दिख रहा है राइट साइड में हरे-हरे छोटे-छोटे घास है उसके ऊपर कुछ येलो कलर के घास है लेफ्ट साइड में मीडियम साइज --

फोटो में बिच में कच्चा रास्ता दिख रहा है राइट साइड में हरे-हरे छोटे-छोटे घास है उसके बगल में कुछ यल्लो कलर के घास है लेफ्ट साइड में मीडियम साइज --

फोटो में एक बड़ा से बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जिसका कलर येलो और रेड में है उसके ऊपर में व्हाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर में ब्लू कल से लिखा हुआ है नगर पंचायत--

फोटो में एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जिसका कलर येलो और रेड में है उसके ऊपर में वाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर में ब्लू कलर से लिखा हुआ है नगर पंचायत --

पहना हुआ है एक माथे में गमछा लपेटा हुआ है ऑरेंज कलर का दूर में बहोत सारे ऑटो रिक्शा है।

ऊसके बगल में एक अंकल खड़े हुए है। एक आदमी बाइक के ऊपर बैठा हुआ--

उसके बगल में बाउंड्री दिया हुआ है जिसका ऊपर में येलो कलर का पेंट है उसका ऊपर में ब्लैक कलर से लिखा हुआ है पीछे में एक बिल्डिंग है येलो कलर का लेफ्ट साइड में एक पेड़ है बड़ा सा --

फोटो में कुछ खाली जगह है यहाँ पे कुछ जगह पे येल्लो कलर के घास उगे हुए है बगल में एक रास्ता है जिसमें --

एबो ए टी लोग दाढ़ी आछे तार फ़ोन दिये तार ए टी ओटा फोटो तुलछे।

उसके पीछे एक आदमी है जिसने व्हाइट रंग का शर्ट पहना हुआ है इन्होने खली पैर भी--

फोटो में सामने में खाली जगह है यहाँ पे व्हाइट कलर का एक गाय भी है यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर का घांस है कुछ येलो कलर का घांस है यहाँ पे छोटा सा कच्चा रास्ता भी है।

एमा हाफ पैंट है बगल में एक और आदमी है जिसने ब्लैक कलर का पैंट ब्लैक कलर का शर्ट पहना हुआ है उसके बगल में एक बच्चा भी--

पीछे में एक बिल्डिंग है व्हाइट कलर का जिसके ऊपर अ ब्लू कलर का लाइटें लगे हुए है यहाँ पे बहुत सारे पोल है पोल के ऊपर व्हाइट कलर का लाइट है उसकी नि --

उसके बगल में तिरंगा का झंडा लगा हुआ है उसके बगल में व्हाइट कलर का लाइट है नीचे पे कुछ पेपर रखे हुए है बगल में रेड कलर का छोटा सा स्पीकर भी है।

फोटो में एक रास्ता है रास्ता के बगल में पानी है उसके बगल में लैंपपोस्ट है छोटा-छोटा--

फोटो में बहोत सारे टेबल है टेबल के ऊपर में एक कपड़ा बिछाया हुआ है उस कपड़े के ऊपर व्हाइट कलर का कपड़ा रखा हुआ है उस--

उसके पीछे व्हाइट कलर का लाइट लगा हुआ है इन्होंने पैरो में चप्पल पहना हुआ है।

इसपे वाइट कलर का लगा हुआ है यहाँ पर मिरर भी है व्हाइट कलर ला लाइट भी सामने टेबल पे वॉलेट रखा हुआ है चश्मा रखा हुआ है कैंची रखा हुआ हैं।

एक डेस्क रखा हुआ है ऊपर में एक पंखा है ऊपर में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसका ऊपर में लिखा हुआ है वस्त्र ऑटो डील --

फोटो में एक रास्ता है रास्ते के ऊपर में एक बस है रेड और ब्लैक कलर में उसके ऊपर व्हाइट कलर से लिखा हुआ है कृष्णा उसके नीचे में लिखा हुआ है डब्ल्यू. डब्ल्यू.डब्ल्यू. डॉट. --

फोटो में एक रास्ता है रास्ते के ऊपर एक बस है रेड और ब्लैक कलर में उसके ऊपर में वाइट कलर से लिखा हुआ है कृष्णा उसके निचे में लिखा हुआ है डब्लू डब्लू डब्लू डॉट --

वो एक बच्चे ने पिंक कलर का टोपी पहना हुआ है उसके बगल में एक औरत है जिसने येलो कलर का साड़ी पहना हुआ है उसके बगल में एक और औरत है जिस --